working with data in calc पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न सीखेंगे:
समान spreadsheet के सभी शीट्स पर समान कंटेंट साझा करना
cell में data हटाना data बदलना data का भाग बदलना
यह tutorial ubuntu linux os वर्जन 1804 और libreoffice suite वर्जन 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
spreadsheet में data प्रविष्ट करना कॉफी कठिन हो सकता है
अतः calc इसे आसान बनाने के लिए कई tools प्रदान करता है
सबसे बुनियादी क्षमता mouse के साथ एक cell के कंटेंट को दूसरे में खींच कर रखना है
फिर भी calc में स्वचालित input विशेषकर पुनरावृत्तीय data के लिए अन्य tools हैं
ऐसा fill tool एक tool है
यह एक ही बार में समान spreadsheet की कई शीट्स में data input कर सकता है
personalfinancetracker ods खोलें
अपनी file में heading cost के data को निकटवर्ती cells में copy करें
cell पर click करें जिसमें cost में 6000 प्रविष्टि है
बाएं mouse button को पकड़कर रखें इसे cell के अंत तक खींचें जिसमें कीमत 2000 है
साथ ही चयनित cells के दाईं ओर निकटवर्ती cells चुनें
इन निकटवर्ती cells में हम data को copy करेंगे
अब बायां mouse button छोड़ दें
फिर menu bar में sheet menu पर click करें और fill cells menu पर जाएं
सबमेन्यू में fill right विकल्प पर click करें
वैकल्पिक रूप से आप standard toolbar में column icon के dropdown पर click कर सकते हैं
हम देखते हैं कि heading cost का data निकटवर्ती cells में copied हो गया है बदलावों को अन्डू करें
fill tool का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग sheets में data के रूप में कुछ series भरना है
calc सप्ताह के पूर्ण और संक्षिप्त दिनों और वर्ष के महीनों के लिए default सूची प्रदान करता है
यह यूजर को उनकी स्वयं की सूची बनाने के लिए भी सक्षम बनाता है
अब अपनी sheet में days named now heading प्रविष्ट करें
इसमें हम सप्ताह के सातों दिन स्वतः प्रदर्शित करेंगे
heading days के नीचे पहले सात cells चुनें
अब menu bar में sheet menu और फिर fill cells menu पर click करें
सबमेन्यू से fill series विकल्प चुनें
fill series dialog box प्रदर्शित होता है
अब series type में autofill विकल्प पर click करें
start value field में हम सप्ताह का पहला दिन type करेंगे जो sunday है
increment field में 1 पहले से ही set है
अब ok button पर click करें
हम देखते हैं कि सभी दिन स्वतः cells में प्रदर्शित होते हैं
हम इस पद्धति से केवल कार्यदिवस और महीने प्रविष्ट कर सकते हैं क्योंकि यह calc में पूर्वपरिभाषित है
अब मैं क्रमिक data स्वतःभरने के लिए अन्य पद्धति समझाता हूं
दूसरी cell में sunday type करें और enter दबाएं
यह column में अगली cell पर focus बदलेगा
उस cell पर जाएं जहां sunday टाइप किया था
हम cell के निचले दाएं कोने पर एक छोटा काला box देखते हैं
mouse से इस box पर click करें
जब तक आप दाईं ओर पर display box में saturday न देखें तब तक नीचे खींचें माउस box छोड़ दें
cells स्वतः कार्यदिवस से भर जाते हैं
यह पद्धति सभी क्रमिक data के लिए कार्य करती है
इन बदलावों को अन्डू करें
अब हम start end और increment मानों को प्रविष्ट करके संख्याओं की एक autofill श्रृंखला बनायेंगे
हम पहले cells a2 से a8 तक की serial संख्या डिलीट करेंगे
अब menu bar में sheet फिर fill cells और fill series विकल्प पर click करें
fill series dialog box में series type में linear विकल्प पर click करें
start value field में हम पहली serial संख्या प्रविष्ट करेंगे जो 1 है
end value field में हम आखिरी मान 7 type करेंगे
अब हम increment मान 1 set करेंगे यदि यह पहले से 1 नहीं है
फिर ok button पर click करें
बदलावों को देखें
नियतकार्य के रूप में increment मान 5 के साथ उपर्युक्त steps को फिर से करें
बदलावों को देखें और फिर उन्हें अन्डू करें
इन सभी स्थितियों में fill tool cells के मध्य केवल क्षणिक संबंध बनाता है
जब वे भर जाते हैं जो cells का एक दूसरे से संबंध नहीं रहता है
calc में समान data समान कई शीट्स पर समान cell location में प्रविष्ट किया जा सकता है
इसका अर्थ है कि प्रत्येक शीट्स में अलग से समान data प्रविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है
उन्हें एक ही बार में सभी शीट्स में प्रविष्ट किया जा सकता है
सीखते हैं कि यह कैसे करें
personalfinancetracker ods file में हमारा पूर्ण data sheet 1 पर है
अब हमें sheet 1 के data को प्रदर्शित करने के लिए sheet 2 और sheet 3 चाहिए
ऐसा करने के लिए menu bar में edit menu पर click करें और फिर select पर click करें
select sheets पर click करें
select sheets dialog box प्रदर्शित होता है
shift की का उपयोग करके sheet 1 sheet 2 और sheet 3 विकल्प चुनें और फिर ok बटन पर क्लिक करें
यह हमें वापस sheet 1 पर ले जाता है
अब sheet 1 में कुछ type करें
उदाहरणस्वरूप cell f12 में मैं type करूंगी this will be displayed on multiple sheets
tab एक के बाद एक sheet 2 और sheet 3 पर click करें
हम देखते हैं कि प्रत्येक शीट्स में cell f12 समान data प्रदर्शित करता है
इन बदलावों को अन्डू करें
अब हम cells में data डिलीट और edit करने के भिन्न तरीकों के बारे में सीखेंगे
किसी भी मौजूदा cell formatting को हटाए बिना data डिलीट करने के लिए पहले cell चुनें
cell का data input line field में प्रदर्शित होता है
फिर से input line पर click करें
अब keyboard पर backspace की दबाएं
data डिलीट हो गया है
इन बदलावों को अन्डू करें
cell में data का बदलने के लिए cell चुनें और पुराने data पर type करें
नया data सेल की मूल formatting बनाए रखेगा
इन बदलावों को अन्डू करें
हम पूर्ण कंटेंट को हटाए बिना cell में data के भाग को भी बदल सकते हैं
ऐसा करने के लिए cell पर doubleclick करें
फिर इस पर doubleक्लिक करके rent शब्द चुनें double expenses टाइप करें और एंटर दबाएं
बदलावों को देखें
इन बदलावों को अन्डू करें
अंत में file सेव और बंद करें
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखाः
fill tools का उपयोग करके data स्वतः भरना
समान file की सभी शीट्स पर समान कंटेंट साझा करना
cell में data हटाना data बदलना data का भाग बदलना
नियतकार्य के रूप में spreadsheetpractice ods फाइल खोलें
time के अतिरिक्त month column बनाएं
may महीने तक स्वतः भरने के लिए fill series विकल्प का उपयोग करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपनी समयबद्ध queries को इस forum में post करें
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया है यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूं धन्यवाद